पत्ता गोभी एक बंदा हमसे हिंदी में हम लोग बंदा गोभी कहते हैं और यहाँ पे एक सब्ज़ी होती है यहाँ से शाम को हमको ले जाते है और बेचते हैं बेचने के बाद उन्हें मुनाफ़ा भी होता है। मुनाफा होने के बाद ये बाज़ार में जाने के बाद आदमी खरीदते हैं और जो हम लोग सब्जी खाते हैं। यही ये भी एक बंदा गोभी है जिसे हम लोग खाते हैं।